और उसके साइड में यहां पे रिक्शा है गाड़ी है मोटरसाइकिल है बहुत। अरे बंधन उसके साइड मे बंधन बैंक है बंधन बैंक नजर आ रहे हैं।

और इसमे यहां पे मोटरसाइकिल कोने में दिखाई दे रहे हैं। उप नीचे मे ढलाई करल है और उधर गे कुछ दुकान नजर आ रहे हैं। दुकान में एक समान-तमान एक कुछ व्यक्ति भी है। और उसके साइड मे पेड़ दिखाई दे रहे हैं नारियल का पेड़ भी है।

यहाँ पर इशू मसीह वह पे साइड इ है और एक गोल का जो चमकदार रौशनी चारो बगल से वो है साइड में बोलने के लिए वहाँ पे माइक भी है।

और उधा यहाँ पे इसु मसि का गिल है और खिड़कियां खू- खुली गई खुली हुई है। खिड़की खुली हुई नजर आ रही है।

इसमें दिखाया गया है की थोड़ा-थोड़ा जंगल भी है और जमीन जो है बालू जैसा और थोड़ा उधर मकान बन रहा है। एक व्यक्ति खड़े है मकान की टंकी के साथ टंकी के साइड में और बांस-टाँस बहुत गड़े नजर आ रहे हैं।

इसमें दिखया गया की यहाँ पे एक रिक्शा वाला रिक्शा खड़ा करके नीचे बैठे हुए है और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे है और चरचक्का भी आगे में जा रहे है और इसके साइड ने एक यहां पे पेड़ नजर आ रहे है।

पानी भी है पानी दोनो तरफ भी पानी भी है जंगल भी है पेड़ भी है और बालू जैसे भी कुछ चमक रहे है चटक रहे है बालू जैसे भी---

दिखाया गया की यहां पे नीचे में पर्ति है और रोड पे एक व्यक्ति जा रहे है और उसके दोनों साइड तीन ठो बिल्डिंग एक ठो एक एक साइड में दो तीन चार बिल्डिंग है उसके चारो बिल्डिंग में तार खिंचा गया है एक साइड तार खींचा गया है।

और उसके पीछे में एक पेड़ है पेड़ के साइड में इधर पॉल है पॉल के साइड में इधर घर है जिस पे इशू मसीह का है--

दिखाया गया है की यहां पे बलून्स है यहां पे पहले सूतरी से कुछ चमकी जैसे बांध के लटकाया गया है उसमे सब लटका के उसमे बैलून भी टांगा गया है जो दुकान के ठीक सामने है एक दुकान बंद है दूसरा दुकानखुला है।